इसमें हम देख सकते हैं यहाँ हमें ईटों का ढेर देखने को मिल रहा है और पीछे हम देख सकते हैं कि बल्लियाँ सी गड़ी हुई है उसमें रस्सी वगैरह बंधी है पीछे टेंट सा लगा हुआ है।

में हम देख सकते हैं यहाँ हमें अ मट्टी वाली जमीन देखने को मिल रही है यहाँ पर काफी सारे पत्थर वगैरह मट्टी वगैरह दिख रही है हमें --